और साइड में खम्बा टाइप का भी लगा हुआ है और यहां पे बहुत जगह भी पड़ी हुई है।

देखने से लगता है कि घूमने की जगह हो जहां पे कुछ लोग खड़े हुए हैं कुछ बैठे हुए हैं यहां पे--

ये ब्लू कलर भी दिखाई दे रहा है और सामने से रोड भी गया हुआ है और यहा पे पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

यहा पे सामने ट्रेन खड़ी हुई हैरेल की पटरिया बनी हुई हैऔर उस साइड कुछ बिल्डिंग भी नजर आ रहे है और यहा पे स्टेशन बना हुआ है जहा पे--

और लाईट वगेरा भी लगे हुए हैं और सामने सीडिया भी दिखाई दे रही है और सामने पेड़ भी नजर--

थोड़े ब्लेक कलर मे भी है और सामने एक आदमी बैठा हुआ है और सामने एक बोर्ड भी लगा--